और एक व्यक्ति भी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

और इमारत भी सड़क के पास में दिख रही है।

और पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं।

लिविंग इनॉक्स लिखा दिखाई दे रहा है और सामने कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर बारिश होती दिखाई दे रही है जहां पर पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक किला दिखाई दे रहा है यहां पर तोप रखे हुए है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गैरेज दिखाई दे रहा है।

और पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

और पानी की बॉटल्स दिखाई दे रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं जहां पर बड़े से गेट लगे हैं।